दिखाई दे रहा है हेल्मेट भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वाइट कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

पे रोड दिखाई दे रहा और जाली भी दिखाई दे रही है यहा पे एक पाइप भी दिखाई दे रही है और एक शेर दिखाई दे रहा--

एक पत्थर भी दिखाई दे रहा है और लोगो ने रेड ब्लू कलर कपड़े पहन रखे है।